जो कि इस आदमी को अभी चोट लगी है।

जो भी दो की दो बच्चे नहा रहें हैं।

अभी ये आदमी एगो ड्रिल मशीन लिए हुए हैं।

टी-शर्ट इसमें जंघिया --

उसके बाद इधर संतोरा हो गया इधर केला हो गई।

इधर नीचे एक बाल्टी है।

चाट है कुर्सियाँ हैं उनके यहाँ टेबुल हैं।

जो कि यहाँ देखने में नजर आ रही है की ढलाई हो रही।

जो कि चारों ओर कॉलम लगा हुआ हैं यहाँ हवा की मशीन हैं।

ढलाई उधर क्लीन हुए हैं इधर बचे हुए है तीन-तीन खटाल चार-चार खटाल।

आगे भी बहुत अच्छी खूबसूरती जगह है जो कि अभी देखने में भी नजारा भी आ रही है।

और ओय पे दस पंद्रा कुर्सियां है चेयर जो की व्हाइट कलर की है बीच में रेड मारा हुआ है।

जो कि ऊपर मेन प्लस का एक अथी बनाया हुआ है।

ढ़ेर सारी महिलाए ढ़ेर सारी लेडीज ढ़ेर सारे जेंट्स हैं।

जो कि अभी देख रहे हरी-हरी बोहोत बहु सारे पैर है।

जींस हाफ टी-शर्ट पहने हुए है।

नंबर है उसका गाड़ी का और बगल में एक मोटरसाइकिल लगाया गया एक भी उधर कार है उधर साइकिल है क्या-क्या मोटरसाइकिल है एक पीछे आदमी है।

टी-शर्ट पहने हुए हैं जो की चेन लगा हुआ है।

और कितने सारे यहाँ लोग खड़े हुए हैं दो चार पाँच आदमी है इ ब्लू सा जीन्स पहने हुए हैं ब्लैक सा जैकेट .

और वार्ड कमिश्नर वार्ड कमिश्नर सब स सारा आदमी इसी में बैठता है।

हौ वाइट कलर का एक --

यहाँ केक बनाए जाते हैं। वाइट कलर की चारों बगल क्रीम लगे हुए हैं।